यहाँ पे एक बड़ा सा मंदीर हैं। उसमे बहोत नीचे बहोत सारी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। सीढ़ियों पे कलर पेंट है।

उम्म कुछ लोग बैठे हुए हैं। सामने दोकानें हैं। दोकानों में कांच के गेट --

यहाँ पे एक बड़ा सा रूम है। रूम में एक बेड है। बेड पे --

इनमे नीचे नीला कारपेट बिछा हुआ है।

एक बोरी रखी हुई है।

बड़े-बड़े से बोर्ड लगे हुए हैं।